हेलो एवरीवन आप देख सकते है ए.टी.एम. के बाहर की पिक्चर है।

हेलो एवरीवन आप देख सकते है ये एक पार्क की फोटो है जहाँ एक काफी खूबसूरत पेड़ है।

हैलो एवरीवन आप जैसे देख सकते हैं ये जो एक फोटो है ये एक कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो है।

जहाँ पे जे.सी.बी. की मशीन रखी हुई है।

आप यहाँ देख भी सकते है लेफ्ट पर लिखा हुआ है राज बैटरी शॉप ।

ओहिए पके हेय खाने की दुकान है और ये लिखा हुआ है आ यूनिट ऑफ़ झूमर इवेंट एंटरटेनमेंट ।

और ये एक पक्का एक डॉल्स की शॉप है | यहाँ पे आपको हर तरह की डॉल्स देखने को मिल सकती है।

हेलो एवरीवन जैसे की आप देख सकते है --

और मैं भी ऐसा नज़ारा एक बार देखना चाहता हूँ और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं की सनसेट कितना प्यारा लग रहा है।

और ये किराने की भी द हम बोल सकते हैं की ये किराने की दुकान है।

और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर के साइड बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं इन कट्टों में पक्का बोहोत सारा सामान होगा रखने के लिए।

और यहाँ पे काफी सब चीजे हैं यहाँ पे अंदर दो लोग बैठे हुए हैं अंदर दूकान का मालिक भी बैठा हुआ है।

और उस एम्बुलेंस के उपर लिखा हुआ है परफेक्ट और एक दिल बना हुआ है | उस एम्बुलेंस का नंबर लिखा हुआ है सारे नंबर लिखे हुए हैं एकसौ एकसौ एक एकसौ दो--

और यहाँ पे सब बच्चे काफी मेहनत से पढ़ने में लगे हुए हैं और टीचर्स उन्हें पढ़ा रही है।